यहाँ पर शीशे की खिड़की भी लगाई गई है। यहाँ पर टाइल्स भी बिछाए गए हैं। यह घर काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें अनेक सारे लाइट भी हैं।